आते है जो दूर के होते है वो यहाँ पे रात में --

जो की इस तरह के मार्केट मे तकरीबन --

यदि किसी आदमी को उधर जाना हो तो यहाँ से भी --

ठण्डी का समय है।

बड़ा-सा मशीन है यहाँ पे कन्स्ट्रक्शन का काम --

अच्छा तरीक़ा से फोटो लिया गया है।

जैसा देखने में लग रहा है जहाँ कि लाइटिंग काफ़ी --

स्कूल का सीन है प्राइवेट स्कूल जहाँ पर की बच्चे जो हैं अपना प्रॉजेक्ट जो है सबमिट कर रहे हैं।

और इस तरह का जो भी क्लासेज होते हैं स्कूल होते हैं इसमें इस ढंग का --

और इस तरह के होटल जो हैं अभिक समय में तक़रीबन --

इसमें आई.टी.आई. कॉलेज का सीन है जो कि बच्चे जगते है यहां पर अपरेंटिस करते हैं।